मुझे यहां एक कार डीलर नजर आ रही है।

सामने मुझे नेचुरल प्लांट पौधे भी दिखाई दे रहा है।

मुझे वहां ब्लू कलर के भी ड्रमस दिखाई दे रहे हैं।

दोनों साइड पेड़ पौधे लगाया हुआ भी दिखाई दे रहा है।

स्टोन के ऊपर व्हाइट कलर से कुछ लिखा हुआ भी नजर आ रहा है।

सीरी के सामने बहुत सारे लोग भीड़ होते हुए भी नजर आ रहे हैं।

मुझे यहां पत्थरों से बनाया हुआ एक जगह नजर आ रहा है।

मुझे वहां खुला आसमान भी नजर आ रहा है।

मुझे यहां एक राशन की दुकान नजर आ रहा है।

इस दुकान के बिल्डिंग ब्लू कलर के हैं दुकान के बरांडा में मुझे वहां एक स्टूल भी नजर आ रहा है।

और वह मशीन से मेजर कर रहा है सामने मुझे गिरे हुए ईट भी दिखाई दे रहा है।